टाइल्स लगे हुए है | लाल कलर का बॉक्स रखा हुआ। बड़े पेड़ पौधे और हरे कलर के घास वाला ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है पेड़ पर एक कौवा बैठा नजर आ रहा है |

इस फोटो में एक नदी नजर आ रही है जिसके एक किनारे पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। लाइटिंग और टावर दिखाई दे रहा है। एक --

इस फोटो में रोड का किनारा दिखाई दे रहा है जिसके फुटपाथ पर हल्की झाड़ियाँ घुम्मट नुमा आकर के पेड़े दिखाई दे --

इस फ़ोटो मैं एक लंबी नदी दिखाई दे रही है जिसमे सूरज सामने चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज की परछाई नदी में पड़ रही है। नदी --

रंग बिरंगे पर्दों से सजाया गया है। हरे सफेद लाल रंग के पर्दे खींचे हुए हैं। गेट का रंग तिरंगा कलर का है। सीढ़ियां लाल रंग की और फूल मालाएं --

इस फोटो में दो मंजिला इमारतें दिखाई दे रहीं हैं जिनपर बोर्ड लगा हुआ है बिजली का तार लटका नज़र आ रहा है बिल्डिंग में काले कलर की कांच की खिड़कियां लगी दिखाई दे रहीं हैं।

काउन्टर लिखा हुआ है कृष्ण भगवान दही के हांडी में हाथ डालें पे पोस्टर लगा हुआ है कुछ खाने के सामान का भी पोस्टर दिखाई दे रहा है कांच और नीचे काले कलर का पर्स नजर आ रहा है।

इस फोटो मे स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी दिख रही है सामने एक कांच का गेट लगा मकान दिखाई दे रहा है जिसके अन्दर कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

दिखाई दे रहे उम्म् हैं। ग्राउंड में हरी घास और कुछ मिट्टी वाली जगह भी दिखाई दे --